उम्मा उम्म शाश्वत दंडत दंडवत कर रहे हैं लोग।

घर उ कुछ बना हुवा है। कुछ सफ़ेद रंग से रंगा गया है। दो मंजिला तीन मंजिला भी घर नजर आ रहा है। शाम का समय है।

कुछ म्म सम्म फल भी मिल रहा है। यहाँ पर कुछ हरी सब्जियाँ भी अनेकों प्रकार की सब्जियाँ है जैसे प्याज आलू बैंगन।

गोबी पालक अदि यहाँ पर बहोत सारे लोग भी हैं।

सामने में स्टेज बना हुआ है। स्टेज काफी ऊपर बना हुआ है। ऊपर वेलकम लख लिखा हुआ है।

यहाँ पे बहोत सारे बाइक है। यहाँ पर एक आध आदमी नजर आ रहा है। सामने बाइक के पास एक आदमी खड़ा है जो शॉर्ट पैंट पहन रखा है।

सामने में एक मंदिल है। मंदिल सफ़ेद रंग का है। वहाँ पर एक चबूतरा भी बनाया गया है। वहाँ पे कोई संत-महात्मा बैठे हुए हैं।

नीचे में भोग भी लगा हुआ है।

इसके सर पे तीन क्लचर और कुछ सामान रखे हुए हैं। बगल में एक लड़की बैठी हुई है जो आइने में नजर आ रही है।

सामने में कुछ दुकान नजर आ रही है। दुकान का बंद नजर आ रहा है। सामने में एक बैंक है। बैंक अलाहाबाद बँक है।

डेस्क के उपर कुछ सामान रखा हुवा है। उसी के बगल में एक डस्टबिन भी रखा हुवा है। यहाँ पर कुछ खिड़की शायद है। खिड़की के पास परदे हैं।